और एक सोफा भी है और उसके नीचे में वाइट कलर का बहुत सारा कुर्सी--

और उसके साइड में एक बड़ा सा पुल है।

यह एक मस्जिद है जो व्हाइट कलर का कलर है और उसका गेट के बाहर में ग्रीन कलर का कलर है।

यह एक बिल्डिंग है जहां पर एक ट्रैंड्स मोल है।

यह एक गाड़ी है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है उसके साइड में भी कुछ गाड़ी है।

यह एक रोड है। जहां पर एक आदमी जा रहा है।

और नीचे में भूरा रंग का भी कप है और साइड में वाइट कलर का और क्या क्या रखा हुआ है।

गेट का कलर वाइट और रेड है।

और यह पौधे साइड में भी हैं।

और आगे में आम के सूखे पत्ते से सजाया गया है।

दो आदमी भी है जो एक आदमी ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना है।

दूसरा आदमी व्हाइट कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना है।

इसके अंदर मैं भी बहुत सारे बाइक हैं बाहर में भी बहुत सारे बाइक हैं।

यह एक दुकान है जहां पर दो आदमी हैं।

यह एक बिल्डिंग है। जहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है। जिसमें जी वोग लिखा हुआ है।

और उसके आगे में एक आदमी खड़ा हुआ है।

जैसे बैग बोटल बुक कैंची --

और एक साइड में वाइट कलर का भी कॉपी है।

यह कोई संस्था का घर है जिसके अंदर में बहोत सारे आदमी औरत है।

यह एक रूम है जहां पर एक टेबल एक बेड बेड के ऊपर में एक रजाई तथा उसके साइड में एक पर्दा लगा हुआ है।

और साइड में एक ड्रेस का पुतला भी है बाहर में केले का पेड़ भी हैं।

यह एक आद्या दुकान है जिसके बाहर में ब्लू कलर का और वाइट कलर का बैलून से सजाया गया है।

यह एक रोड है जहाँ पर एक सिटी फ्रूट्स नाम का दुकान है।